यहाँ पे वेज नॉन वेज सभी प्रकार के भोजन मिलते हैं ।

यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर होते हैं।

जो की स्टूडेंटो को अच्छे से पढ़ाते हैं।

यहाँ पे दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए।

यहाँ पे बोहोत सारे कंडक्टर होते हैं।

बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं और इस सड़क में टू वे सड़क है इसमें --

फ़ास्ट फ़ूड मिलते हैं यहाँ पे लोग आते हैं।

शोरूम है। और यहाँ पे हुंडई की गाड़िया मिलती है। यहाँ पे बोहोत ही अच्छी-अच्छी हुंडई की गाड़िया मिलती है।